और पेड लगे हुए है पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है और बहोत सारे पेड़ और कुछ रेड कलर से लिखा हुआ है रेड कलर की बिल्डिंग --

यहां एक ग्राहक सेवा केंद्र दिख रहा है जिसमें बहुत से कार्य लिखे हुए है और बाजू की तहर एक बॉटल रखी हुई--

एक पानी की बॉटल भी रखी हुई है यह बहोत ही सुंदर सा दृश्य है।